इस तस्वीर में हमें एक हेलमेट भी पड़ा हुआ दिख रहा है।

येह तस्वीर एक इंडस्ट्री की है इस तस्वीर में हमें बहोत सारे वर्कर्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक पेट्रोल पंप का है।

इस दृश्य में हमें एक कार नजर आ रही है।

चर्च के आसपास बहुत सारी फोटोस लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यह दृश्य हमें एक मैरिज हॉल का नजर आ रहा है।

घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य एक कैफे का है।

सड़क के आस पास बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

राइड्स पर एक बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें कुछ पौधे गमले में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक बैडमिंटन ग्राउंड का है।

यह दृश्य एक गांव का है।

नदी के आस पास कुछ लोग खड़े हैं।

नदी के आसपास पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।